अंदर में बहुत सारे साड़ियां रखी हुई है रैक के उपर--

यहां एक रिक्शा रिक्शा है रिक्शा चला रहे हैं और बहुत लेडीज हैं जेंट्स हैं और एक सामने बिल्डिंग है।

ये स्टेशन है रेलवे स्टेशन है और ये देवघर रेलवे स्टेशन है जो बाबा मंदिर का एक फोटो बना हुआ है।

दूसरा व्यक्ति ऊपर देख रहे हैं उसका भी एक पर रेलिंग के ऊपर है।

यह मॉल है जो तरह तरह के डिजाइन के कपड़े रखे हुए हैं।

नीचे एक रोड गया है और बगल में एक व्यक्ति फोन चला रहे हैं।

एक पीछे घर बने हुए हैं और बगल में एक मिट्टी का घर बना हुआ है।

कुछ महिला के हाथ में झाड़ू है।

और एक अ वेट मशीन भी रखे हुए है।

कुछ सोफे लगे हुए हैं।

और बहुत सारे कुर्सियां लगे हुए हैं।

और इस पार्क में और भी कुछ एक्सरसाइज करने का समाने रखे हुए हैं।